जो ब्लैक वाले अंगूर हैं जो कि काफी अच्छे लगते हैं और कैरेट है जो कि उसमे पेपर लगे हुए हैं।

पैकेट है जो की ब्रेड के है और टॉफी भी मिल रही है बहुत ही अच्छा कुछ है स्वीट है।